एंट्री गेट पर हमें बहोत ही सुंदर डेकोरेशन फ्लार्स से दिखाई जा रही है।

यह दृश्य हमें किसी टेलर की शॉप का लग रहा है।

यह दृश्य हमें किसी कैफे का दिखाया जा रहा है।

इसके ऊपर ब्लैक कलर का बोर्ड लगा हुआ है।

जिस पे यू_के पिज़्ज़ा एंड बर्गरस लिखा हुआ है।

उन्होंने ब्लैक कलर के वस्त्र पहनी है।

इस दृश्य में हमें एक बहुत ऊंची इमारत नजर आ रही है।

वह एक पत्थर की फ्लोर पर खड़ी हैं।

उसके चारों ओर कुर्सियों पर हमे बहोत सारे लोग नजर आ रहे है।

इस दृश्य मे हमे एक बहोत ऊंचा मिट्टी का ढेर दिखाई दे रहा है।

यह दृश्य हमें किसी फंक्शन का दिखाई दे रहा है।

हमें स्टेज पर बहोत सारे लोग दिख रहे हैं।

हमें चेयर्स भी बहोत दिख रहीं हैं।

हमें एक बिल्डिंग का हिस्सा दिखाया गया है।

स्टेज के ऊपर हमे बहोत सारी लाइट्स लगी हुई दिखाई दे रही है।

जैसे कि ज्वेलरी बिंदियो के पत्ते--

एक अपार्टमेंट का दिखाई दे रहा है।

इस दृश्य में हमे बहोत सारे लोग नजर आ रहे है।

एक आदमी के हाथ में हमें एक बुक दिखाई दे रही है।

उन पर कोई भी पेशेंट्स नहीं बैठे।